इस तस्वीर में मुझे कुछ पुरुष नजर आ रहे हैं जिसमें एक पुरुष अपना फोन चलाता हुआ दिखाई दे रहा है।

पीछे एक पुरुष अपनी कटिंग कराता हुआ नज़र आ रहा है।

उनके पीछे कुछ कांच भी लगे हुए नजर आ रहे हैं।

इस तस्वीर में मुझे कुछ महिला योगा मैट पर योगा करती हुई दिखाई दे रही हैं।

इस तस्वीर में मुझे एक बड़ी सी नदी दिखाई दे रही है।

उनके ऊपर बहोत सारी एसीस भी लगी हुईं दिखाई दे रही हैं।

जिनके पीछे एक छोटी सी दुकान नजर आ रही है।

इस तस्वीर में मुझे एक दुकान नज़र आ रही है जहाँ अंदर बहुत सारे सामान पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

जीसके आस पास बहोत सारे घर बने हुए नजर आ रहे हैं।

तस्वीर में मुझे एक काली कलर की प्लेट दिखाई दे रही है जिसमें दो कप कॉफी नजर आ रही है।

और एक पीछे एक क्रुक भी नज़र आ रही हैं और कुछ बोर्ड्स भी दिखाई दे रहे हैं।